यहां पर मिट्टी-मिट्टी दिख रही है दूर-दूर तक और कुछ पानी भी भरा हुआ है और आगे जा के कुछ पेड़ जैसा कुछ हरी-हरी दिख भी रहा है एक बड़ा-सा पूल भी है जिस पे एक गाड़ी एक बस और कुछ लोग---

ऊपर आ- ऊपर आसमान नीला नीला नज़र आ रहा है बादल धोले धोले दिख रहा है एक बड़ा सा पेड़ है।

जिस पर नीचे से बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है उसमे अंदर जाने के लिए वो बड़े बड़े एक बड़ी सी मूर्ति भी है जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं काफी सुन्दर लग रही है।

लोग भी है जो नहा रहा है इस पानी में और ऐसा करके मौसम दिख रहा है कुछ --

यहां पर दो सफेद बस दिख रही है और एक हरी बस है और अगल-बगल पेड़ ही पेड़ है एक दुकान भी है एक ठेला भी है।

ब बीच मे बड़ा सा गेट और कुछ हरे-हरे भी लगे हुए है। वो काफी सुंदर लग रहा है वो देखने को और बादल आसमान बिल्कुल सफेद--